ये फोटो इसमें हमें बैकग्राउंड जो दिखाया गया है वो यूनियन बैंक का दिखाया गया है।

जो मसाज कर रहे है। एक एक्सरसाइज बता रहे है।

इस पिक्चर में पूरा व्यू दिखाया गया है की डैम का व्यू कैसा लग रहा है दूर से जैसे पानी फ़्लो कर रहा है पीछे --